ये काफी भीड़ है पंखे लगे हैं पोस्टर्स लगे हैं लाइट्स है।

फुल या पेड़ पौधे बेच रहे हैं।

एक टेंपो है काफी सारे पटाखे--